ब्लॅक ग्रीन जैसा है एक झाड़ है हरा रंग का।

ब्ल्यू ग्रीन डार्क ग्रीन और मरून कलर के--

यहां पर एक बड़ा सा मैदान दिख रहा है उस मैदान का मिट्टी का रंग पीला है दूर--